यहाँ बोहोत सारे मछलियां है। कुछ छोटे-छोटे मछलियां भी टब में रखे गए है। कुछ बड़े-बड़े मछलियां भी रखे गए है और बोहोत सारे टबे है। सबमें मछलियां रखी गई है।

बहुत ही सुन्दर सा गार्डन है। इस गार्डन में पहलकियाँ झूले भी लगे हुए हैं।

यह एक होटल है वसंत बहार का यह बहुत ही बड़ा है यहाँ बहुत सारे सामान दिख रहें हैं।

यह एक कपडे की स्ट्रॉ है यह बहुत ही बड़ा है यहाँ बहुत सारे आदमी दिख रहें हैं यहाँ हरे हैंगर में कपड़े रखे हुए हैं।

यहाँ बोहोत सारे आदमी दिख रहे हैं बोहोत सारे आदमी ने लाइने लगायी गयी है ये येस बैंक है।

कुछ पत्ते भी दिखाई दे रहे है। पेड़ के कुछ छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है और यहाँ से एक ही वो घर दिख रहा है।

बहोत छोटे-छोटे झाड़ियां भी है कुछ बड़े-बड़े पेड़े भी दिखाई दे रही है कुछ घासें भी दिखाई दे रही है।

यह जमुई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है। यह बोहोत ही बड़े है। यहाँ बोहोत बड़े पोस्टर लगे हुए है। यहाँ बोहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रहे है। बोहोत ही बड़ी है। यहाँ--

यह घर की छतें है जहां बोहोत सारी चटे बिछाई गई है बोहोत सारी पाइपें बिछाई गयी है। बोहोत ही बड़े बिल्डिंग है। यहाँ बोहोत सारे बोरे रखे गए है।

निम्बू है यहाँ बहोत सारे केले टंगे हुए हैं कुछ बोतल भी है यहाँ कटोरे में भरा-भरा है हर काउंटर में भरे-भरे हैं यहाँ बहोत सारे फल और सब्जियाँ दिखाई दे रहे हैं।